कांच का गेट लगा हुआ है पेड़ रखा हुआ है।

इसके अंदर बहोत सारे लाइट लाइट की तार जा रहे है बलफ लगे हुए है।

बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं बैग दिखाई दे रहा है बाल्टी रखी हुई है बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत सारे फूल के पेड़ लगे हुए हैं नीचे हरा भरा घास जमा हुआ है।

लगी हुई है सामने एक गुड्डा रखा हुआ है।

पीछे बहुत सारे लगी हुई है कैमरा लगा हुआ है आदमी बैठे हुए हैं।

एक थैला रखा हुआ है चाकलेट का डब्बा रखा हुआ है।

आंखे बनी हुई दिखाई दे रही है कुछ लिखा हुआ है दीवाल पर लाइट का बोर्ड लगा हुआ है।